खाली मैदान नजर आ रहा है।

नजर आ रही है।

जिसमें चार लड़कियां नजर आ रही हैं।

बर्गर पैटीज जूस कोल्डड्रिंक सैंडविच सब मिलत--

इसके बराव में एक गाड़ी खड़ी है।